एक रेस्टोरेंट के बाहर का इमेज है बुक रे अह ब्रूक्स रेस्टोरेंट एंड कॉफी का।

अगल बगल साइड में ग्रीन करके घांस जली हुई है अब सामने एक साइकिल खड़ी हुई है दो बोर्ड लगे हुए हैं।

ये एक शॉप्स की दुकान है जो मीनू एमप्रिल के नाम पे यहां पे लेडिस सू--

यह विशाखा डेयरी पार्लर है यहां पे लोग खड़े हुए बाहर और--

ये एक रूम है यहां पे बड़ी सी कम डेस्कटॉप रखा हुआ है जिसमें कुछ ओपन हो रखा है दो आदमी है यहां--

ये यहां पे स्टेज परफॉर्मेंस हो रहा है बहोत सारी ऑडियंस है।

पेंट वगैरा हो रखा है ब्लैक टाइल्स लगी हुई है।